असमान ब्लू है देखने में अच्छा लग रहा --

इधर मोबाईल चला रहे हैं दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है एक आदमी दाड़ पर हाथ रखे हुए है पोस्टर टंगा हुआ है।

यह मोर है मोर बहुत बड़ा है यह पंख फैलाया है ।

पेन है हुआ है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ।

फर्श है फर्श पे चादर बिछाया गया है। एक आदमी है जो बीम खिच रहा है। देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है वो टी-शर्ट पहना है ।

यह नदी है नदी के किनारे बहुत सारा खर पतवार है।